नदी का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बोरियाँ दिखाई दे रही है जो कि अ गिट्टी रेत सिमेन्ट की बोरियाँ हैं जो यहाँ रखी हुई हैं। इसके ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्रिज के पास खड़े हुए हैं।

एक सैलून की फोटो दिख रही है जहां एक मैसेज मशीन रखी हुई है आप मुझसे क्या कह सकते है मैं और अधिक देख सकता हूं और एक काउंटर दिखाई दे रहा है।